पेड़ पौधे पीछे लगे हुए है बहुत ही अच्छा दृश्य नजर आ रहा है वाव क्या दृश्य नजर है एक मकान दिखाइ दे रहा है टंकी दिखाई दे रही है।

कुछ टेबलें लगी हुई है एक रोड दिखाई दे रही है इतना सुंदर दृश्य तो बहुत ही अच्छा दृश्य है बनाने वाले ने भी क्या दृश्य बनाया है वाव क्या दृश्य है।

औरतें बैठी हुई हैं जिनको वो कुछ बता रहा है एक झेंगडा दिखाई दे रहा है पीछे बहोत ही खूबसूरत दृश्य --

सामने एक आदमी टेबल पे बैठा हुआ है जो फोन हाथ में लेकर रखा है पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है इसके हाथ में कोई मशीन दिखाई दे रही है जो --

लोहे की गेट लगी हुई है बहोत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है क्या गेट दिखाई दे रही है माशाल्लाह क्या गेट है वाउ --

सामने मुझे एक फोटो दिखाई दे रही है जो बहोत ही अच्छी और सुंदर सी तस्वीर में दिखाई दे रही है इसमें अलग अलग प्रकार के --

ये कोई बाग ये बागीचे मे बैठी हुई नजर आ रही है बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दृश्य नजर आ --

पंखे जैसा कुछ लगा हुआ है बहोत ही अच्छी और सुंदर तस्--

एक आदमी कुछ कर रहा है एक आदमी उसके पास खड़ा हुआ है जिसने कच्छा पहन के रखा है एक थैला पड़ा हुआ है टेबल पड़ी --

सामने मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है जो बहुत ब्रज वाली की ऐसी दुकान दिखाई दे रही है जो बहुत ही अच्छी है उसके सामने एक रोड है जिसमें बहुत ही कद --

ये पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है तो स्कूटी दिखाई दे रहा आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत ही अच्छी और सुंदर जिसकी आप बाहर सीटें लगी हुई है जिसपे एक लड़का बैठा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है।

मुझे सामने एक बहुत अच्छी और सुंदर ऑफिस की तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है।

मुझे सामने एक बहुत ही सुंदर और बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है जो बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है सामने।

इसमें मछलियां काट कर बेची जाती है एक मछुआरा बैठा हुआ है जो मछलियों को बेचता है।

बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है जिसमें बाइके के कुछ कांच के शीशे में बाइक ये रोड पर खड़ी हुई नजर आ रही है ये दुकान का सेंटर आधा खुला हुवा है।

मुझे सामने एक बहुत ही अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही सुंदर और अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है सामने।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कुछ करीम पाउडर ऐसे कुछ वगैरह रखी गई है बहुत ही अच्छी तस्वीर है जिस बाक्सों में रखी --

हॉल के अंदर एक पर्दे लगाए गए है ऊपर लाइटें लगाए गई है एक एग पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर।

मुझे सामने एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छी फोटो नज़र आ रही है सामने।

एक सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है एक रेत का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है।

मुझे सामने फोटो दिखाई दे री है फोटो बहोत ही अच्छी दिखाई दे रही है फोटो का दृश्य बहोत ही सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है।